एह एक बहुत खुबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमे बहुत सारी खिड्किया दिखाई दे रही है नीचे बोर्ड भी दिखाई दे रही है ऍडवरटाइज़मेंट के बोर्ड भी लगाए गए है बहोत सारे।

एक खूबसूरत व्हाइट कलर का रूम दिखाई दे रहा हैं जहा सारी औरते साड़ी पहनी हुई हैं ओर यहा पर जेन्स भी सादे कलर बे पहने हुए हैं यहा बहोत सारे दिये जलाए जा रहैं हैं। यहा--